ये एक बहुत बड़ा स्टार स्टैचू है और उसके चारों तरफ हरयाली है ।

ये एक सुंदर -सा मंदिर है इस मंदिर का कलर पीला है इस मंदिर के पीछे बहुत अच्छी हरियाली हैं।

और बहोत अच्छा आसमान दिख रहा है नीला--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

ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम है इस इलेक्ट्रिक शोरुम में बहुत सारी स्कूटी है और स्कूटी के ऊपर हैलमेटस रखे हुए है।